आ सगरी आदमी भरल बने। आ पेड पौधा भी बाटे। आ निक लागता देखले में। आ इ सब उथु बाटे भरल पानी बी लउकता बहुते अच्छा लागता देखे में |

मछरी ओछारी बेचतानी जा का अच्छा लागता। बड़े बड़े मछरी बाड़ी कुल मछरी लगता बाजार हटे |

लागता की एगो आदमी बाड़न। लागता पहलवान वोहलवान हवन। आ फोटो मोबाइल लेले बाड़न |

ओनिया केतना फुल बाटे निक लागता जगह-जगह फूल बाटे आ एगो लाइका बारन खड़ा बारन अच्छा लागताटे एगो न्यू आदमी बारन फोटो खींच तारन लागता।

कुछु कर ता लोग। बहुते निक लागता देखे में। बहुते हरियाली चारो ओर बाटे। आ फूल वूल चारो ओर बाटे |